और कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए --

इस पर कुछ फैन वगेरा भी लगे हुए हैं औ --

और एक बस भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।